यह फिर समुद्री खानो का मार्केट है। जहां पे समुद्र में मछली मिलने वाली अन्य अन्य तरीका की मछलियां प्रॉन्स क्रेब्स सेलस --

बुक स्टॉल के बाहर खड़े होकर किताब पड़ते नजर आ रहे हैं वही कुछ अन्य व्यक्ति किताब को खरीदते भी नजर आ रहे है।

तस्वीर में एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर नजर आ रहा है यह मंदिर जरूर ही किसी साउथ कलर्चस या फिर साउथ ट्रे़डिसन स्टेट का मंदिर लग रहा है।

यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है टूरिस्ट कैपिटल से आयोजित करने वाली फंक्शन लग रही है| यह एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट औरंगाबाद टूरिस्ट की ओर से आयोजित की गई है।

यह एक फ्लावर शॉप या फिर पूजा सामग्री की दुकान के बाहर की तस्वीर है।

रंग बिरंगी लाल हरी बुली नीली साड़ियां पहनी हुई है ये किसी त्योहार की तस्वीर है।

तस्वीर में एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग या बहुमंजिला इमारत दिख रही है। ये इमारत में व आधुनिक जमाने व टेक्नोलॉजी से लैस है।